ये फोटो एक बहोत ही सुंदर बगीचे की है।

ये जो फोटो है ये फोटो बहोत प्यारी--

इस फोटो में हमको एक क्लीनिक दिखाया गया है।